सामने एक व्यक्ति बैठ कर फ़ोन पे बात कर रहा है। जिसके सर पर सफ़ेद टोपी है। एक व्यक्ति खड़ा है। जिस के मुंह पर मास्क लगा है।

दो लोग लाइन में काफी लोग बैठे हुए है और सामने कुछ लोग सफाई कर रहे है | एक औरत के हाथ में झाडू है |

ये बहुत सुंदर डांस कर रखी है और यहाँ खूब सारे बैलून लगे हुए है। जो कि अलग अलग रंग के है।

बाहर ये एक दीवाल है। जो कि हरे रंग की है और बिजली का एक खंभा है और काफी सारे पेड़ है।

जो कि लाल और पीले रंग के हैं। यहां दो लैपटॉप हैं सामने एक एल_ई_डी लगी हुई है और यहाँ काफी सारी लाइटे हैं।